फूलो से सजी हुई है। इधर सभी प्रकार के चीजे उपलब्ध हैं। यहाँ केक स्वीट्स और चॉकलेट कुरकुरे सब आइटम् मिलते हैं।